बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

दूसरी साइड पर गाड़ी खड़ी है।

उन्होंने के आगे कुछ सामान बिखरा हुआ है।

एक टीचर व्हाइट ड्रेस में खड़ी है।

जिसमें रेड कलर के कपड़े पर वाइट कलर का क्रॉस का--

एक साइड पर सोफ़ा लगा है दीवार पर सिनरी लगी हुई है।

कांच के बाउल शेल्फ पर पड़े हैं।

उन्होंने कैरेट में मछलियां डाली हुई है।

फूलों के साथ डेकोरेशन की हुई है।

जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है।

जिस पर वाइट कलर से बाल दाढ़ी लिखा है।

एक आदमी माइक पकड़ कर खड़ा है।